व्हाइट दीवार है बहोत सारे लोहा लक्कड़ कबाड़ा रखा है ग्रीन कलर की छत है छत मे बहोत सारे बॉक्से बने हुए--

और एक गेट बना हुआ है ब्लैक कलर का दीवार है औ यहां पे अभी काम चल रहा है लाई--

यहां पे एक स्कूल है मंदिरामे--

यहां पे एक कमरा है ब्लैक कलर का दीवार है टी_वी है।